लड़के ने हाथ में घड़ी पहनी हुई है।

यहां पर एक बिल्डिंग है।

ए_सी लगी हुई है बाहर--

पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर एक बिल्डिंग है एक घर है यह पर।

पंखा चल रहा है कैमरा स्टैंड है।

यहां पर बहुत जाम लगा हुआ है।